जो मिर्चाई बाड़ी चिल्ड्रन पार्क लिखा हुआ है।

अब ए.टी.एम. में कब ए.टी.एम. लिखा हुआ है यहां पर बाहर में एक आदमी हेलमेट हाथ में लेके ए.टी.एम. कार्ड निकाल के अंदर जाना चाह रहा है और इसमें लिखा है एक सौ पान सौ एंड दो हजार लिखा हुआ है नोट है इसमें है उपलब्ध बगल में एक आदमी कमर पे हाथ रखकर कुछ बोलना चाह रहा है।

एक कुर्सी भी रखा हुआ है ब्लू कलर का बगल में एक आदमी है जो हाथ रेलिंग पे रखा हुआ है बहुत सुन्दर दिख रहा है ।